और सामने एक पौधा भी है और एक डस्टबिन एक मूर्ति है यह तो बहुत ही इम्पोर्टेन्ट है की यह हिंदुत को बढावा दे रही है।

देखिए दोस्तों यहाँ एक घर की निर्माण करने हेतू यह एक बीम दिया जा रहा और यहाँ तीन आदमी भी हैं एक लगे --

देखिए दोस्तों यहाँ देख सकते हैं काफी डमरस काफी काफी डमरस आप यहाँ देख सकते हैं काफी बड़ा रूम होगा।

बाकि बाद काफी आदमी कुछ लग रहा है की हटिया जैसा है । साइकिल उकील भी खड़ा है । बाकि बाद बाइक पीछे साइड है ।

फूल है पौधे है और यह बहोत ही वाइट कलर का जो नज़ारा है काफी अच्छा है आप यहाँ देख ही सकते हैं।

हैंडसम मुंडा लग रहा है गोरे मुंडा लग रहा है। बहुत ही बड़ा-बड़ा पत्थर लग रहा है टाइल्स जैसा ही लग रहा है लेकिन बहुत ज्यादा मोटा लग रहा है।

अदर ऑइल कंपनी से कुछ सस्ता मे ही पेट्रोल मिलती है और यह बहुत ही बड़ा लग रहा है सामने पेड़-पौधे भी है पॉल्यूशन से भी बचाता है।